मुझे इस चित्र में बहोत सारी चेयर दिख रही है।

मुझे इस चित्रा में पारसी का रंग ब्राउन दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में भारत का नक्शा दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में लोहे की अलमारी दिख रही है।

मुझे इस चित्र में बहुत सारे पेड़ दिख रहे--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

मुझे इस चित्र में कुछ मशीन दिख रही हैं मुझे इस चित्र मैं गुब्बारे दिख रहे है।

मुझे इस चित्र में लाइटिंग दिख रही है मुझे इस चित्र में पर्दा दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में एक स्टूल दिख रहा है जिसका रंग नीला है।

मुझे इस चित्र में कुछ महिला दिख रही है।